यहाँ पे फंक्शन की तैयारी हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन हो रखे है और यहाँ पे फ्लावर्स की मतलब डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कलर्स ऑफ फ्लावर बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है।

यहाँ ये स्ट्रीट देख सकते हैं ये बहुत अच्छी बनी हुई है और ये स्टेयर्स भी बोहोत अच्छी हैं लोगों के लिए मतलब ये एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह जाने तक का शार्ट और ये रेलवे के उप ट्रैक के ऊपर से --

सीरियल वाइज बैंक के अंदर जाएँगे और अपना ए_टी_एम कार्ड स्वीप करें।

और मैदान नाईट में अच्छा व्यू आ रहा है कैंडल जला रहें ये लोग प्रे कर रहें भगवान से और दिया भी जला रहें हैं लोग और अभी बहोत भीड़ हो र --

इस हवेली का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है और इसमें आर्किटेक्चर ने अच्छा डिज़ाइन कर रखा है।